क्रीम कलर की दीवार है जमीन का रंग भी चॉकलेटी है।

नीले रंग का आसमान है नारंगी रंग की छत है पीले रंग का बोर्ड है।

एक आदमी के हाथ में काला रंग का मोबाइल --